बच्चो के खेलने के लिए अलग-अलग तरीके के झूले बने है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं खेलने से बच्चो का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

यह एक अंडरग्राउंड कार पार्किंग है जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ पार्क है।

सफ़ेद रंग की है अस्पताल में अच्छे-अच्छे डॉक्टरों द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है।